पेड़ भी है जिनपर व्हाइट और रेड कलर पुते है और--

यहा पर देखिये कितने सारे छोटे-छोटे वा बड़े-बड़े पेड़-पत्थे दिखाई दे रहे है --

यहाँ पर देखिये सामने एक टाइल्स कोटा बिछा हुआ मैदान है उस मैदान के सामने एक पिंक कलर की बिल्डिंग है।